इमारत के सामने सीढ़ियां और एक रैंप है।

साइन पर नाम अंग्रेजी और अन्य भाषा में लिखा हुआ है।

पर एक फोन नंबर भी लिखा हुआ है।

जिम में विभिन्न प्रकार के व्ययाम मशीन है जिसमें वजन उठाने का उपकरण और ट्रेड मिल भी है।

फर्श में हरे रंग की घास है।

यहां बच्चे लोग लाल रंग के आसन में बैठे हुए हैं।

शिक्षक उन्हें योग सिखा रहे हैं।

नदी में एक बोट भी है जिसमें लोग बैठे हुए हैं।

यह तस्वीर एक बस स्टैंड की है।

मेज़ के दोनों किनारो पर फूल के साथ दो बड़े फूलदान रखे हुए हैं।

इस पर रोशनी की एक माला भी है।

रेस्टोरेंट में एक विशाल इनडोर सीटिंग एरिया है।

रेस्टोरेंट में दो मंजिलें है।

मॉल मे एक बड़ा हाइपरमार्केट एक मल्टीप्लेक्स सिनेमा और एक फासकोट भी है।

यह चित्र एक दुकान की है।

दुकान में पेप्सी की कई कैरेट दिखाई दे रहे हैं।

दुकान में काउंटर है जिसमें पेप्सी की ब्रांडिंग की हुई है।

यहां कई प्रकार की मछलियां बिक्री के लिए रखी गई है।

नींव में करके डालने के लिए फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है।

मजदूर नीव के अंदर काम कर रहे हैं।

कुछ मजदूर कर कंक्रीट मिक्स कर रहे हैं।

निर्माण स्थल पर कुछ उपकरण और सामग्री भी दिखाई दे रही है।

गेट नीले रंग से रंगे हुए हैं।

जिसमें प्राचीन वस्तुए शामिल है।

दीवार पर कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं।

यह चित्र इक पुरानी कार की है।

बाजार में सब्जियां और अन्य समान बेचा जा रहा है।

तस्वीर में तीन गाड़ियां दिखाई दे रही है।

मुख्य व्यंजनों में उत्तम पराठा और विभिन्न प्रकार की कड़ी शामिल है।

सामने दो मूर्तियां रखी हुई है।

कमरे में फूलों दानों में भी फूल भी राखे गाए है।

ये जमीन की माप लेने के लिए एक थियोडोलाइट का उपयोग कर रहे हैं।

महज़िद के प्रवेश द्वार ग्रील लगे हुए हैं जो काले रंग से रंगी हुई है।

मस्जिद में कई पुरुष हैं और महिले दिख रहे हैं।

चित्र में शॉपिंग कंपलेक्स का बाहरी का हिस्सा दिखाई दे रहा है जिसमें एक प्रवेश द्वार है।

प्रवेश द्वार पर एक साइन बोर्ड लगा है जिस पर कन्नड़ और अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है।

ऊपर सागवान क्या किसी सामान मजबूत लकड़ी से बना है।

यहां पर टेंट भी लगे हुए हैं।

शिक्षक एक व्हाइट बोर्ड पर कुछ लिख रहे हैं शायद उन्हें पाठ समझा रहे हैं।

एक बस आगे की ओर है और दो बस पीछे की ओर।

यह चित्र एक खाली इंडो क्षेत्र की है।

यह स्थान खेल और अन्य गतिविधियों के लिए है।

कमरे में ढेर सारी कुर्सियां और डेस्क है जो करीनो से सजाया हुआ है।

डैक्स लकड़ी के धातु से बनी हुई है।

कुछ लोग सफेद कपड़े पहने हुए हैं।

लॉबी मैं एक सूचना बोर्ड भी दिखाई दे रहा है।

बस स्टैंड पर कुछ लोग खड़े हैं जो बसों का इंतजार कर रहे हैं।

प्रत्येक बोरी पर कीमत लिखी हुई है जो दो सौ निन्यानवे से तीन सौ निन्यानवे तक हैं।

पीछे की अलमारीयो में अन्य सामान भी दिखाई दे रहे हैं।

चर्च की दीवारें लाल और सफेद है।

चर्च के बाहरी हिस्से को रंग बिरंगे सजावटो से सजाया गया है।

मस्जिद में हरे रंग का कालीन बिछा हुआ है जिस पर नमाज पढ़ी जाती है।

यह चित्र एक बगीचा का है।

एक महिला पेड़ पौधों में पानी डाल रही है।

यहां कागज के झूमर बनाए जा रहे हैं।

यह चित्र एक नदी के ऊपर बनी एक लंबे पुल की है।

क्लब हाउस के इमारत में कांच की खिड़कियां है।

यह चित्र किसी बस डिपो या टर्मिनल की है।

तस्वीर में कुछ बसें खड़ी हुई दिखाई दे रही है जोकि सफेद और लाल रंग की है।

एक इमारत पर हरी बत्ती का चिन्ह दिखाई दे रहा है।